इसके बगल में एक और बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग पीला दिख रहा--

यह एक गांव का दृश्य दिख रहा है जिसमें की चारों तरफ फूल दिख रहे हैं।

पानी के पास यहां पर एक बहोत ऊंची सी दीवाल दिख रही है।

यहां पर एक टीवी कैबिनेट बना हुआ है जिसका रंग काला है।

इनमें से दो बच्चियों ने हाथ में मोमबत्ती ली हुई है।

शीशों के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पर सफेद रंग के पंखे लगे हुए--

इमारत के नीचे कुछ दुकानें हैं यहां पर लोग हैं।

इस चित्र में हमें एक दुकान दिख रहा है जिसमें की मूर्ति रखने का समान बनाया जाता है।

फूलों का रंग हमें लाल पिला गुलाबी दिख रहा है।

ऊपर में एक सफ़ेद रंग का पंखा लगा हुआ है।

यहां पर कुछ सफेद रंग के गमले दिख रहे हैं।

यह एक होटल का दृश्य दिख रहा है जिसमें की बहोत सारी कुर्सियां और टेबल लगे हुए हैं।

और नीचे टाइल्सो का रंग भूरा और सफेद है।

साइड में कुछ ट्रालियां लगी हुई हैं।

ये एक प्रोग्राम का दृश्य दिख रहा है।

आदमी खडा़ है जिसने हाथ में माईक लिया हुआ है।

यहां का फर्नीचर काले रंग का दिख रहा हैं।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

यहां बगल में हमें कुछ कुर्सियां भी दिख रही हैं।

बगल में कुछ ईंटे भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे कपड़े को सजाया गया है।

एक ऑटो में बैठे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य दिख रहा है जिसमें ऊपर की दीवालो का रंग सफेद देख रहा है।